यहाँ पर हमें ऊँचाई पे कई समान रखे नजर आ रहे हैं जैसे की बैग झोले आदि।

इस में हमे तेल रखा गया नजर आ रहा है हालांकि ये तस्वीर बाहर से ली गई हैं और यहां पर हमे घर भी दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति जो कि बैठा हुआ नजर आ रहा है।

जिसका रंग काला है और इसका टावर जिस पर चांद बना है वह लाइट से जगमगा रहा है यह दृश्य रात का है मस्जिद चमक रहा है।

साथी ही साथ यहाँ पर हम एक मशीन जो की सिलेंडर जैसा है वो दिखाई पड़ रहा है और कई पाइपें भी दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे की इन सब का धुलाई हो---

यहाँ पर हमें मशीन में प्लग लगाया हुआ नजर आ रहा है साथी साथ इस कंकाल में हमें ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ दिख रहा है दे रहा है यहाँ पर हमें सॉकेट भी देखने को मिल रहा है।

यहां पर हमे कई टमकते हुए अं बत्ती भी दिखाई पड़ रही है।